कूलर फ्रिज ए_सी और उस दुकान के अंदर तीन लड़के खड़े हैं।

साइड में एक सायकल खड़ी है सायकल के ऊपर दो सीसे लगे हैं।

एक लंबी सड़क है इस सड़क के उधर साइड में कुछ ईंटे लगी हैं।

एक बस आगे खड़ी है और दो बस पीछे खड़ी हैं।

ये एक नीले कलर का फैन लगा है।

और सामने में एक जीना दिखाई दे रहा है और इधर साइड में कुछ सामान रखा है।

टेबल के ऊपर कुछ सामान रखा है और पीछे एक लड़का बात कर रहा है।

पीछे एक लाइट लगी है और दो टेबल लगे हैं टेबल के ऊपर एक बोतल है बोतल के साइड में कुछ फूल रखे हैं।